और पीछे खाना भी खा रहे है।

कलरफुल रुम है जो बहुत प्यारा है।

और यहां हम देख सकते है।